ये एक पिल्लर लगा रहे हैं नीचे गड्ढा कर रखा है गड्ढे में बहुत सारी ईटे बिछा रखी हैं। एक आदमी ने गुलाबी रंग की टी शर्ट पहन रखी है।

यहां पर मेन्स की हेयर कटिंग करी जाती है एक आदमी बाहर खड़ा है।

पहन रखी है उसके ऊपर टिन की चादर लगी हुई है बाकी साइड में पलटेनियम नाम की एक और दुकान है।

ये लड़की कोई डांस स्टेप कर रही है लड़की ने ऑरेंज कलर की साड़ी पहन रखी है। लड़की का बैकग्राउंड रेड कलर का है।

ये एक स्कूल है। स्कूल के अंदर स्कूल की बेंचे बिछी हुई हैं। बच्चे क्राफ्ट कर रहे हैं। यहां पर बहुत सारे बच्चे हैं। मैडम भी बैठी है।

ये एक हिंदू धर्म का मंदिर है जिसमें भगवान श्री साईं बाबा बैठे हैं। साइड में पुजारी जी बाबा की पूजा कर रहे हैं। बाबा की बहुत सारी मूर्तियाँ रखीं हैं।

बनियान पहन रखी है और लोवर पहन रखा है जिसे बोहत सारा पसीना आया हुआ है।

यहाँ पर क्रिसमस पार्टी चल रही है जिसकी डेकोरेशन ग्रीन कलर की ब्लू कलर की और रेड कलर की लाइटों से कर रखी है। उसके आगे आदमी खड़े हैं। एक आदमी ने जैकेट पहन रखी है ब्लू कलर की और ब्लैक कलर की।

ये बच्चो का डांस क्लास है | यहाँ पर बोहत सारे बच्चे हैं जिसमे एक टीचर है जिन्होंने वाइट कलर की शर्ट पहन रखी है और ब्लू कलर की जीन्स पहन रखी है।